कुश की कटिंग कर रहा है और देखिये यहां पर जैसे यहां पर टी_वी भी लगा हुआ है।

और ऑयल पड़े हुए हैं और यहां पर जो है अह जूसस भी पड़े हुए हैं।

ये देखिए किसी बिल्डिंग के बाहर बहुत सारे जो स्कूटीया साइकिल जो हैं और बाइक जो हैं वह पार्किंग पर लगी हुईं हैं और जो दो बॉयज हैं वो --

यहां पर भी देखिए मेन रोड पर जो है शादी का जो है--

जैसे कि आप यहां देख सकते हैं यहां पे बहोत सारी सब्जियां है जैसे कि मेथी धनिया भिंडी--

और ये लेडीजों की काफी बड़ी शॉप नज़र आ रही है।

और यहां पर जो है में लंच डिनर ब्रेकफास्ट बनता है और यहां पर जो है--

अं बसेस के ओनर भी खड़े हुए हैं और--

अह जो अह काफी दूर जाने वाली बसेस खड़ी हुई है।

और अं यहां पर जो है मतलब कि लोग जो है अपने मनी ट्रांजे --

और नीचे जो है तरह तरह की अलग अलग वैरायटीस के नमकीन भी पड़ी है।

और आर्टिफिशियल चैन्स हो गए आर्टिफिशियल बैंगल्स हो गए--

और बिंदी है बिंदिया होई ये सब चीज यहां पर देखने के लिए मिल रही--

एक बच्ची दूसरी बच्ची को झूला दे रही है और काफी अह यहां पर क्राउड है।